ढेंचू ढेंचू करते है गधे लोग हमेसा वही है।

मुर्गे मटन मच्छी लोग को कटा रहे है मटन ए मटन मुर्गा मुर्गे काट रहे है खाने के लिए कसाई है इनलोग --

वो एक तो है दिख तो रहा है।

और ब्रिज भी अच्छा लग रहा है पूरा लंबा सा लग रहा है ब्रिज भी लंबा होगा मस्त --

बस स्टॉप पे पानी वानी गिरा होगा शायद पूरा गिला-गिला दिख रहा है जमीन भी गिर पूरा पूरा पानी पानी दिखिइ दे रहा है कही जा रहा होगा ये वैसे--

बहोत बड़ा तलाब नदी दिखाई दे रहा है और ये चलने वलने के लिए बना दिया गए है है पत्थर से पूरा वो भी छेका भी लगाए है।

ये न जैन भिक्षुक लोग होते है जैन लोग में ये बौद्धिष्ट लोग में न बौद्धिष्ट लोग में भिक्षुक बोलते है उनलोग न --